यहां पर हमें गेंदे का फूल गुलाब का फूल देखने को मिल रहा है।

यहां पर एक लाल बस दिखाई दे रही है एक सफेद बस दिख रही है।

एक आदमी साइड में चल रहा है। उसने अपने हाथ में हेलमेट को लिया हुआ है। यहां धूप निकली है।

यह तस्वीर एक चर्च के फंक्शन की है यहां फादर के साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने लाल और गोल्डन कलर का--

फ्रूट पहना हुआ है बीच में एक आदमी बैठा है जिसके सर पर टोपी है।

और हमें एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है यहां पर लोग स्टूल पर बैठे हुए हैं और एक आदमी कुछ कर रहा है।

यह चित्र एक स्कूल का है यहां हमें तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो लाल रंग का स्वेटर पहनी हुई हैं लड़कियों ने बैक टांगा है।

एक मैडम खड़ी है जिसने पीला स्वेटर और सफेद फ्रॉक पहेनी हुई--

बैंक के बाहर हमें ए_टी_एम दि दिख रहा है और नीचे लिखा है--

फेस्टिव ट्रीट्स और यहां पर कार का फोटो बना हुआ है।

वन और पर्दे टांगने के स्टेन वगैरह यहां मिलते हैं।

हमें यहां फाइलें भी दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत लाइटें दिखाई दे रही हैं वो यहां पर सैंपल रखे हुए हैं।

बाहर एक औरत और बच्चे की मूर्ति भी बनी है पार्क में झंडे लगे हुए हैं यहां पर पार्क के बाहर सिल्वर जाली लगी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर औरत और आदमी देखने आए हैं औरत ने पीली साड़ी पहनी हुई है।

इस तस्वीर में हमें खेत नजर आ रहा है खेत में कोई सब्जी बोई हुई है यहां की सड़क कच्ची है मिट्टी दिखाई दे रही है।

यह हरा भरा खेत है खेत में एक बिजली का ता पिलर भी लगा हुआ है जिससे तार बने हुए हैं।

खेत के आसपास हमें कुछ घर दिखाई दे रहे हैं सामने हमें दो ट्रक नजर आ रहे हैं।

पीछे हमें लड़के दिख रहे हैं जो कि शलवार कुर्ता पहने हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रही है एक पहाड़ी--

पेड़ नजर आ रहे हैं पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं।

घर के बाहर सफेद रंग की बाउंड्री बनाई गई है।

यहां पर लड़कों के कपड़े मिलते हैं शर्ट टी-शर्ट पेंट लोवर और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें एक जगह दिखाई दे रही है जहां सामने जोकर की फोटो बनी हुई है उसके साथ दो जोकर भी दिख रहे है यहां दो काले स्टूल रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गौशाला नजर आ रही है।

यहां पर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके सहारे सीडी रखी हुई है।

चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं पेड़ थोड़े छोटे हैं।

एक आदमी जिसने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है गाड़ियों का फोटो खींच रहा है।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

पहाड़ पर हमें दो कुत्ते नजर आ रहे हैं एक कुत्ता काले रंग का है और एक कुत्ता भूरे रंग का है।

पहाड़ पर खाई भी दिख रही है यहां बहुत बड़े-बड़े पाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनमें बादल भी दिख रहे हैं और धुआं निकल रहा है।

मस्जिद को सफेद और हरे रंग से पोता गया है।

पीछे हमें बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं एक रॉकेट नजर आ रहा है।

पीछे हमें स्टेज दिख रहा है जो कि फूलों से सजा हुआ है।

झूले के आगे दो छोटी छोटी डलीयांए टंगी है।

एक आदमी जिसने सफेद शर्ट पहनी है वो खड़ा है।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

वो नीली जींस पहनी हुई है वह एक नारंगी रंग की कुर्सी पर बैठा है।

यहां बहुत सारे बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही है गांव की फोटो भी--

सामने हमें ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं एक घर नजर आ रहा है जो नारंगी पुता हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक खेल का मैदान नजर आ रहा है यहां कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वहीं चार लड़के बैठे हुए हैं।

जिसमें से दो लड़कों ने काली जैकेट पहनी हुई है।